विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चो का डांस चल रहा है जिसमे एक लड़का अपने हाथ से --

आग लगने के चान्सेस है यहाँ पर।

यहाँ पर एक महिला एक पुरुष खड़े हुए है जोकि इस गाय की देखभाल करते है।

यहाँ पर ड्राइंग सिख रहे है। ये नन्हे मुन्हे विद्यार्थियों एक छोटा सा स्कूल है।

यह एक बहुत ही पुराना किल्ला है जो की पत्थर से बना हुआ है यह बहुत ही प्राचीन समाय का किल्ला है यहा पर लोग घूमने के लिए भी आते है।

यह एक बस स्टेशन की तस्वीर है यहा पर बसेस आति है और यात्रिगण यहा पर सफर करते है।

बहुत अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर लोग घूमने भी आते जाते रहते है।